स्टेयर्स पे बहुत सारे गमले रखे हुए हैं।

हमें इस फोटो में कोई प्यूपल हाउस नजर आ रहा है जहां--

हमें इस फोटो में एक मार्केट जैसा नजर आ रहा है।

ऊपर की तरफ कुछ झालरें भी लटकी हुई हैं।

इस फोटो में महऋषि यूनिवर्सिटी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी दिखाई दे रहा--

पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक कलर का दिख रहा है।

उसी रूम में एक बेड भी पड़ा हुआ है।

उसके ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं।

दीवार के साइड एक लोग खोपड़ी पे कुछ रखे हुए हैं।

में इस फोटो में कोई इमारत नजर आ रही है।

कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं।

इसमें बहोत सारी गाड़ियां चल रही हैं।

और उसके बगल में एक पॉप्युलर होम का बोर्ड लगा हुआ है।

उसके बगल में एक स्कूटी काली कलर की खड़ी हुई है।